यहाँ एक घूमने का रिसोर्ट हैं सा टाइप से लग रहा है यहाँ पास एक अमरुद का पेड़ भी बगल में दिखाई पड़ रहा हैं जो बहुत ही छोटा है।

यहाँ पास स्केल व शीश पेन रबर कटर भी दिखाई दे रहे है यहाँ --

फूल पीले कलर के दिखाई पड़ रहे हैं।

ब्रिज टाइप दिखाई दे रहा हैं उसमे चल रही है।

यहां पास एक आईना दिखाई पड़ रहा है जिसमे --